इस चित्र में एक लेखन सामग्री की दुकान दिखाई दे रही है।

जिसके आस पास कुछ बेंचें रखी हुई हैं बैठने के लिए।